यहां पर बत्तख तैर रही हैं।

यहां पर छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पेड़ और खंभे के बीचों-बीच में वाइट कलर का मिस्टर पॉइंट ब्राउन लिखा हुआ है।

जिन पर क्रीम कलर का पेंट हुआ है।

और यहां पर कार्स और बाइक्स भी हैं।

और यहां पर कई आदमी खड़े हैं।

और पास में ही फूल भी लगे हुए हैं गुलाबी सफेद।

बेंच भी है जिन पर वो ग्राफ्ट बना रहे हैं।

क्यारियां भी बनी हुई है।